लोग दिखाई दे रहे है यहाँ पर मुझे बहुत लोग दिखाई दे रहे है खेलते हुए नज़र आ रहे है मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे है यहाँ पास पास मुझे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है मोटर साइकिल नज़र आ रही है चारो और पेड़ पौधे ही नज़र आ रहे है बाउंड्री नज़र आ रही है।

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है खेलते हुए नज़र आ रहे है मुझे बहोत बड़ा प्लेस दिख रहा है यह बहोत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहोत बड़ी यहाँ एक टॉवर लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पास पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है और यहाँ खेलते हुए भी नज़र आ--

और यहाँ मुझे कालीन बिछी हुई दिखाई दी रही है मुझे लाइट लगी वे दिखाई दे रही है।

और रहाँ मुझे विंडो नजर आ रही है खिड़कियां नजर आ रही है खिड़कियां के पास गुलदस्ते रखे हुए दिखाई दे--

और यहाँ पूजा करते हुए नजर आ रहे है और यहाँ पे डंडा दिखाई दे रहा है।

कल दिखाई दे रही है और पेड़ पौधे नजर आ रहा है कुछ झोपड़ी बनी हुई दिखाई दे रही है रंगीन झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे है वो फारे दिखाई दे रहे है चारों और पेड़ पौधे ही नजर आ रहे है।

सजावट दिखाई दे रही है मुझे टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ मुझे वो कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है यहाँ मुझे कुछ खास नजर आ रही है मोटरसाइकिल नजर आ रही है लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है चेयर नज़र आ रही है सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

और चारो ओर घने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है बड़े बड़े ढोके दिखाई दे रहे है बहोत सारा पानी--